जैसा कि मैं देख पा रही हूं ये एक संव स्टूडियो है।

टीशर्ट ब्लू जींस उसके हाथ में मोबाइल है उसके पीछे एक लड़का है जो ब्लैक कलर का टीशर्ट पहने हुए हैं उसके वो --

ये अच्छा है रात का समय है एक लड़की है जो पिंक कलर की फ्रॉक पहनी एक लेडी है जो --